एक जेसीबी मशीन जो खुदाई की जाती है नजर आ रही है।

ऊपर टीन की छावनी है और बगल में एक खंभा भी नजर आ रहा है।

बोहोत सारे छोटे-बड़े पौधे घास वृक्ष नजर आ रहे हैं।

लोग पुल के अंदर और बाहर भी दिखाई दे रहे है।